यहां पे बहुत सारे बलून लगे हुए हैं चेयर लगी हुई है टेबले लगी हुई हैं।

ये किसी हॉल की इमेज नजर आ रही है यहां पे बहोत खूबसूरत सा कांच लगा हुआ है सोफे लगे हुए हैं।

अभी स्कूटी का फोटो नजर आ रहा है।

ये एक शॉप में तीनों कोट रखे हुए है।

इसमें ब्लू कलर का शर्ट है ब्लैक ब्लेजर है ब्लैक शर्ट हैं।

ये किसी का खूबसूरत सा घन नजर आ रहा है एक व्यक्ति बाहर चेयर लगा के बैठा हुआ है बहो तीन बाइके खड़ी नजर आ रहीं हैं।

ये शॉप का फोटो नजर आ रहा है इसमें खाने की चीजें लगी हुई है।

हमम चीजें नज़र आ रही हैं वाटर कूलर रखा हुआ है फिश पॉट है बहोत सारी फिशे हैं जिसमें एक पंखा लगा हुआ है।

ये धारपुर जंक्शन नजर आ रिया है यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ व्यक्ति काम करते हुए नजर आ रहें हैं कुछ रेड ड्रेस में खड़े हुए हैं और एकदम परछाई नजर--

ये किसी होटल की तस्वीर नजर आ रही है यहां पे--

सारे बलूंस लगे हुए हैं नीचे का दिख नहीं रहा ऊपर पर्दे डले हुए--

पीछे से खिड़की चुनी हुई है जिसमें से रोशनी आ रही है।

पौधे लगे हुए हैं बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

गार्डन है एक खजूर का पेड़ लग रहा है खम्भा लगा हुआ है।

कंपनी नजर आ रही है जिसमें एक व्यक्ति कंप्यूटर कप पर बैठा हुआ है।

एक पिंक कलर का बलून ऊपर से नजर आ रहा है।

पीछे वहां से एक खंभे में से धुआ निकल रहा है।

यहां पर बहोत सारे बेड भी नजर आ रहे हैं कैरम बोर्ड भी नजर आ रहे हैं पास में एक शॉप और दिखाई दे रही है।

और अलग अलग तरीके की घास दिखाई दे रही है।

इधर सामान दिख रखा हुआ नजर आ रहा है।

पीछे रोड खड़ा हुआ रोड चलता हुआ नजर आ रहा है एक खंभा लगा हुआ है दो कुर्सियां लगी हुई है।

बहुत सारे रंग बिरंगे झंडे लगे हुए नजर आ रहे--

ये किसके घर का इमेज नजर आ रहा है जहां पे--

पीछे अ बल्फ लगे हुए हैं बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

दो व्यक्ति बात करते हुए नज़र आ रहे हैं एक बुड्ढी अम्मा चेयर पर बैठ कर खाना खाती हुई नज़र आ रही हैं।